पोस्टर भी लगे हुए हैं और उसके बगल में एक शटर भी है जो ब्लू कलर का है।

इसमें काफी सारे टाइल्स लगे हुए हैं और यह एक ओवर ब्रिज का भी काम कर रही है।

यह एक बहुत खूबसूरत होटल का दृश्य है जिसमें काफी सारे लाइट लगे हुए हैं।

हॉल की तरफ बहुत सारी लाइट लगी हुई है और मेन गेट के अंदर में दो लाइट लगी हुई है।

सामने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है और टेबल का कलर ब्लू है।

एक मैदान भी है खाली और एक चापाकल भी है और एक बाइक भी लगी हुई है।

तीन मूर्तियां रखी हुई है जिसमें एक बड़ी मूर्ति है और उसके बगल में दो छोटी छोटी मूर्ति रखे हुए हैं।

चे की साइड में शीशे की दवाइयां रखी हुई है और इस साइड में काफी सारे कार्डबोर्ड की दवाइयां रखी हुई--

बहुत सारे मेडिसिन अह लटकाए हुए हैं और ऊपर की साइड में बहुत सारे बोर्ड वाले लगे हुए हैं।

एक ने येलो कलर का टी शर्ट पहना और पीछे बैग टांगा हुआ है।

एक पोल भी लगा हुआ है जिसमें एक लाइट लगा हुआ है और बहुत सारे तार लटके हुए हैं।

तीन झालर लगे हुए हैं जिसमें दो लाइट लगी हुई है और स्टेज के बगल में एक आदमी खड़ा है।

बगल में एक चेयर रखा हुआ है और दो गाड़ी लगी हुई है और दो आदमी काम कर रहे हैं।

यह एक घर के रूम का दृश्य है जिसमें एक दीवाल पे काफी सारे तस्वीरें लगाई हुई--

एक पोस्टर भी लगा हुआ है और काफी सारे लोग टहल रहे हैं।

यह एक मॉल के अंदर का दृश्य है जिसमें दो सीढ़ी सीढ़ियां लगी हुई हैं और ऊपर की साइड में काफी सारे छोटे बड़े लाइट लगे हुए हैं।

एक मैंम भी खड़ी हुई है और एक सर भी खड़े हुए हैं।

में तौलने वाले रखा हुआ है और पत्तल भी रखा हुआ है।

यह एक बड़े बिल्डिंग का दृश्य है जिसमें काफी सारे खिड़कियां लगी हुई है और रेलिंग लगे हुए हैं और एक सीढ़ी भी लगी हुई है।

इनमें काफी सारे पानी भी भरी हुई है।

दो आदमियों ने हेलमेट पहना है और जमीन पर काफी सारे रंग बिरंगे सामान गिरे हुए हैं।